ये कोई स्कूल या कॉलेज का ग्राउंड है मेरे ख्याल से जहां में--

यहां पेड़ पौधे हैं दो पुलिस ऑफिसर खड़े हैं दो लोग खड़े हैं एक कोई टीचर खड़ा--

लाल कलर के साइड एक महिला को बात कर रहे है।

ये किसी का काम करने जगह है गिरास है मेरे ख्याल से जहा मे बहुत ज्यादे --

ये एक मेला है और बड़ा सा पंक्शन --

गेट है एंट्री गेट और ब्लू और वाइट करके एक डेकोरेट करके बड़ा सा पेंडल बनाया है।

जिरा का मसाला और आटा--

कोई कोई देख तो लाल कलर का वाला लाल कलर की कैप भी पहना हुआ है।